मौसम भी खुला हुआ है।

मस्जिद सफेद कलर की पुती हुई है।

पेट्रोल पंप में बहुत सारे ट्रक और बसें खड़ी हुई हैं।

मूर्तियां काफी सारी हैं।

इस पिक्चर में एक गार्डन नजर आ रहा है।

साइड में गार्डन है बीच में से रास्ता गया हुआ है।

छोटे-छोटे गमले रखे हुए हैं जिसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं।

फिरोजी ब्लू येलो रेड वाइट फ्लावर है।

कार्स कुछ ब्लू कलर की है कुछ व्हाइट कलर की है।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

मंदिर में काफी सारी भीड़ है।

लड़कियां स्कूल की ड्रेस पहनी हुई हैं और ग्राउंड में खड़ी हुई हैं।

ए_टी_एम के बाहर बोर्ड पर स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

और स्ट्रेपलर और बहुत सी चीजें रखी हुई हैं स्टेशनरी बहुत बड़ी है।

आसमान बहुत खुला हुआ है।

पीछे ऊ कुछ पीछे दरवाजा है ऊपर स्टार लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में तीन लड़के नजर आ रहे हैं।

लक्षणा इंटरनेशनल अकेडमी लिखा हुआ है।

और कार बेहद खूबसूरत है।